यहां पर एक महेल टाइप में दिखाई दे रहा है। जिस जिसके सामने एक ग्राउंड है। ग्राउंड में हरियाली दिखाई दे रही है कुछ लगा हुआ है।

यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जिम का सामान रखा हुआ है कुछ जिम कर रहे हैं कुछ खेल रहे हैं। पेड़ दिखाई दे रहे हैं टेबल लगी हुई है कुछ व्यक्ति सर्कस कर रहे हैं।

यहाँ पर शहर का नजारा दिखाई दे रहा है बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ पर पेट्रोल टेंक दिख रहा है दो लोग खड़े हुए है लाइटे लगी हुई है वो दिखाई दे रही है एक घर सा एक घर सा बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है।